यहां पर एक लड़की के हाथ में फ्लैग भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं यहां पर --

इस इमेज में सामने यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहां पर सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे सामने यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है।

जहां पर कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर श्री राम ढाबा लिखा दिखाई दे रहा है।

एक पादरी जी की खड़े दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना नजर आ रहा है।

और लाइटें भी जलती नजर आ रही --

इस इमेज में सामने यहां पर गेट के ऊपर फूलों का डेकोरेशन हो रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है।